यहां पर बहुत सारे रॉड बिछाए हुए हैं और यहां पर बहुत सारे पाइप से--

सामने एक स्कूल दिख रहा है।

उनके हाथ में चक्र और शंख है।

यह भी एक फोटो का दुकान है।

यहां पर एक सड़क का दृश्य है यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यहां पर कुछ गाड़ियां भी दिख रही है यहां पर खंबे गड़े हुए है।

इसमें एक पोस्टर में लिखा हुआ है आरती और उसमें महिला का चित्र है जोकि हाथ जोड़े हुई है।

यह एक मॉल है यहां बहोत सारे स्कूटी और बाइक दिख रहे हैं।